यह एक नदी है इस नदी के सड़क पर बहुत सारे लोग खड़े हैं और यहाँ से फोटो खीच रहे हैं इस नदी के ऊपर में एक पूल बनाया गया है और यह सब देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा है इस नदी में बहुत सारा पानी हैं और इसका बहाव बहुत ही तेज है।

यह एक बस है यह बस एक जगह पर खडी है इस बस के बगल में और भी सारी गाड़िया खड़ी हैं यहाँ एक आदमी बैठा हुआ है इस बस में बहुत सारे लोग सवारी करते है और यह बस लोगो के लिए बहुत ही सुविधादायक होती है ।

यह एक कोचिंग क्लास है इस क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और ये क्लास बहुत ही बढ़िया है इस क्लास में बच्चो को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है और यहाँ पे बहुत सारे लड़के-लड़की पढ़ने के लिए आती रहती है।

यह एक होटल है इस होटल में बहुत सारे लोग खाना खाने के लिए आते हैं इस होटल के बाहर में एक आदमी बैठा हुआ है जो की खाना बना रहा है इस होटल के बाहर कुछ औरते भी बैठी हुई हैं इस होटल के अन्दर में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ।